और सभी बच्चे लाइन में लगे हुए है और बिस्कीट के लिए वह बच्चे आएंगे और बिस्कीट ले के जायेंगे और आपने घर पे खाना खा जाए--

एक आदमी झाड़ू लगा रहा है और कुछ टेम्पुआं दिखाई दे रही है यह ब्रीज है

और पानी बहुत लगी हुई है नीचे जमीन सुखी है कुछ भींगी हुई है दो चार बस लगी हुई है।

स्कूल है स्कूल में बच्चे पढाई कर रहे है सभी अपने-अपने ड्रेस में आये हुए है।

बहोत आदमी खड़े हुए यहाँ पे राशन मिलता है एक राशन कार्ड अंगूठा लगाते है और सभी लोग बहोत भीड़ लगी हुई है यहाँ --

एच.डी.एफ़.सी. बैंक का ए.टी.एम. है इस --

एक मुसलमान बैठा हुआ है टोपी पहन कर व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है नि --

मुस्लिम का घर दिखाई दे रहा है यहां लोग सभी नमाज़ पढ़ने आते है यहाँ पे एक पंखा दिखाई दे रहा है ये एक घड़ी दिखाई दे रही है ।